और वो पीछे पूरा पेड़ पौधा भी दिख रहा है और नाव वाव भी चल रहे हैं और बहुत बड़ा नदी भी है और नदी का पानी साफ़ भी होता है और बहुत सारे मछलियां भी होंगे और यहाँ आदमी लोग भी मस्त--

बहुत सारे मछलियां है यहाँ पर छोटे बड़े मछलियां सब है और केकड़ा भी है और यहाँ पर दुकानदार खड़े भी है और यहाँ ग्राहक लेने दिया है और वहाँ से सब मतलब मांगा भी रहे है और यहाँ औरत भी है।

यहाँ पर बहुत सुन्दर नजारा भी दिख रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े पत्तल भी है और यहाँ पर भाईसाब बेग वेग टांग वांग के अच्छी तरह से फोटो भी खिचवा रहे है और यहाँ पर पेड़ वेड़ भी बहुत अच्छा --

यहाँ पर हरे -भरे पेड़ भी है और रोड भी है और यहाँ पर मतलब अच्छा नजारा दिख रहा हैं।